सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियों पे एक छोटी सी फर्श रखी हुयी दिखाई दे रही है।

बोरियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी सी--

और कुछ हैं उन्होंने हेलमेट लगा के रखी है निचे गिट्टी डली हुयी दिखाई दे रही है।

कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं | एक बड़ा सा--

इस फोटो मे मुझे एक चबूतरा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक संस्कृत में एक मंत्र लिखा हुआ है।

और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। आयल की बाल्टी रखी हुई दिखाई दे रही है | एक पेपर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे जमीन पे --

एक गुलदस्ता रखा हुआ दिखाई दे रहा है। साइड में एक बर्तन रखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ग्राउंड दिखाई दे रहा है| ग्राइन्ड ग्राउंड में मिट्टी डली हुई दिखाई दे रही है। बादल दिखाई दे रहे हैं।

उसने माक्स लगाके रखा हुआ है एण्ड जैकेट पहन के रखी हुई है।

कुछ लाल कलर से लिखा हुआ है छोटी सी एक नीले कलर से लिखा हुआ है।

काले कलर से लिखा हुआ है। एक टेबल पे ग्लास रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रही है। उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

एक चबूतरा बना हुआ है | उसमें एक पाइप लगी हुई दिखाई दे रही है।

नारियल के पेड़ लगे हुए है। एक सड़क दिखाई दे रही है जिसमें ईटों से डिजाइन किया गया है।

रोड के किनारे पर पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।